और पीछे जो है वर्कर्स जो है वो बस की सर्विस कर रहे हैं यहां पर एच_टी_सी की बस खड़ी है हिमाचल की सरकारी--

यहां पे एक शॉप है रात का टाइम है।

व्हाइट और ब्लैक कलर की एक्टिवा खड़ी है और साथ में वहां ग्रीन कलर के पेड़ है और एक बिजली का खंभा है वहां पे।

इलेक्ट्रिकल आइटम्स रखे हैं जैसे बलब रखे हैं बिजली जो स्विचेस होते हैं।

सामने एक बेड ले अह रखा हुआ है जिसपे पेशेंट को चेक किया जाता है और एक पेशेंट अपनी जैकेट को पहन रहा है और फोन पे बात कर रहा है।

यहाँ पे जो है पीछे बहोत बड़ा ना नदी है और उस नदी के अंदर जो है दो--

अलग अलग कंपनी के कुलर रखे हुए हैं।

स्टिक पकड़ी हुई है और स्टेज पे जो है चार लड़कियां नृत्य कत्थक कर रही हैं और उन्होंने प्रॉपर ड्रेस पहनी हुई है कत्थक की।

और सॉस बोतल और टिशूज दे रखे हैं उधर।

और यहां पे उसके बाहर एक नोटिस लगा हुआ है उसके बाहर बाइक्स खड़ी हैं साइकिल खड़ी है और डस्टबिन भी है वहां पे बिल्डिंग के बाहर।

मार्ट के नाम से शर्मा गैलरी और उसका कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है बोर्ड पे और उनके शॉप ओपन है शॉप के अंदर जो है।